ये एक दुकान है जिसमें स्कूटी बेज रहे हैं।

वहां पर ग्रेप है वहां पर अनार हैं वहां पर संतरा हैं वहां पर केला हैं।

इस टॉब का कलर येलो और ग्रे है।

वहां पे बोहोत सारी मेडल्स पर रखे गए हैं एक टेबल पे और साइड से बलूंस भी रखे गए हैं।

एक मंदिर जैसा ये है मंदिर लग रहा है।

आगे एक गोरिल्ला भी है और एक मछली भी है जिसके मुंह से पानी निकल रहा है।

ऑफ है जिसमें बहुत सारी चेयर्स है।

जिन सब चेयर्स का कलर लाल है।

जिसमें ये गाड़ियां जैसी है जिनका कलर क्रीम और रेड है।

और उस पे इन्होंने कुछ पेपर के प्रोजेक्ट्स बना कर इस टेबल पे रखे हुए हैं।

इस रूम में बेड पे दो पिलो है दो तकिया है और बेड पे भी कुछ डेकोरेशन है।

लड़का है जो कुछ प्रैक्टिस कर रहा हैं।

और इसमें ग्रे कलर के कपड़े लगाए गए हैं।

जो दूसरी साइड में है वहां पे कोई भी इंसान नहीं है।

ऑटो का कलर ब्लैक है और दूसरे ऑटो का येलो भी है।

वहां पे बीच में एक रंग बिरंगी कलर्स के झूले रखे गए हैं।

साइड से बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो फुली ग्रीन है।

रेड पिंक कलर के कर्टन से सजाया भी गया है।

यहां पे टीचर बच्चों के वेलकम केलिए रहे है।